अलग अलग प्रकार की हैं जो कि कुछ ऊंची कुछ नीची हैं।

तथा आसपास पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं।

जिन्होंने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं।

यहां पर बोहोत ही सुंदर दिख रहा है दृश्य सड़क दिख रही है।

ग्रीन कैफ का है यहां पर कोको कोला नाम से एक लोगो बना हुआ है।

पेन रखे हुए हैं तथा स्कूटर खड़ा हुआ है तथा कुछ कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है।

सामने अंदर बहोत सी लाइट्स जल रही हैं तथा सामान रखा हुआ है जो त कि अलग-अलग डिजाइन से रखा है।

होटल अथवा रेस्टोरेंट या घर में रखे खाने का टेबल पर का सीन है जहां पर प्लेट में चावल यानी की बिरयानी टाइप में चावल राइस रखे हुए हैं।

जो कि बहुत ही सुंदर हरे भरे दिख रहे हैं जिसमें कि मनी प्लांट का पौधा भी है।

जिसमें कि बहोत सारी चेयर्स रखी हुई है द--

जिसमें कि सूरज के ढलने समय का है।

है तथा बाई वन गेट वन फ्री केक एवरी ट्यूजडे ये लिखा हुआ है।

जैसे कि कोल्ड ड्रिंक ठंडा आदि तथा फूलों की मालाएं--

आसपास पेड़ पौधे उगे हुए हैं जो कि हरे भरे तथा झाड़ियों टाइप में दिख रहे हैं।

क्रिश्चियन लोग खड़े हुए हैं तथा और भी लोग खड़े हुए हैं।

जो अपने अपने सामान को पकड़े हुए हैं।

हरी घास का मैदान है तथा आने जाने के लिए रास्ता बना है।

बहुत सारी एक्सरसाइज मशीनस रखी हुई हैं जैसे कि अह रेसिंग मशीनस एंड डंबल्स --

पानी का रंग कुछ मैल टाइप का दिख रहा है जो कि भूरा है।

सामने बहोत सी झाड़ियां है पेड़ पौधे उगे हुए हैं।

एक दाहिनी ओर तथा एक दाई ओर--

सामने से झूमर झालर लटके हुए--

बाइक्स में पेट्रोल डलवाने के लिए--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी जागर्स पार्क लखनऊ विकास प्रधिकरण का है।

आस पास बहोत से पेड़ पौधे उगे हुए हैं।